वो हाथों में कुछ लिए हुए है वो हरे रंग के टी-शर्ट पेन्ट पहने हुए है।

ये एक दुकान है दुकान पर दो आदमी खड़े हुए हैं। एक आदमी अपनी कमर पे हाथ रखे हुए हैं। एक आदमी कुछ ऐसे हाथ करे कह रहा है।

यह एक आदमी है आदमी कुछ काम कर रहा है।

ये आदमी सफेद रंग के शर्ट पेहने हुए हैं और हाथों मे दस्ताने पेहने हुए हैं। सर पर हैट लगाए हुए --